एक सफेद कलर की टी-शर्ट पहने है एक ओरेंज कलर की पीछे तीन-चार आदमी खड़े हैं और वो भी दिख रहे है।